और ऊपर एक कैमरा लगा हुआ हैं वहां पर डस्टबिन पड़े हुएं हैं जो कचरा डालने के लिए होते हैं।

पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और सड़क के र राइट साइड पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे है लाइटें लगी हुई है सड़क के ऊपर --

ये एक ऑफिस है ऑफिस के अंदर कुछ लोग खड़े हुए हैं दीवार पर एक बड़ी सी टी_वी लगी हुई है।

और ऑफिस के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे--

पंखे लगे हुए हैं ए_सी भी लगी हुई दिखाई दे रही है लाइटें भी बहोत ज्यादा लगी हुई है।

और यह अंडरग्राउंड सा भी लग रहा है और पेड़ पर लाइटें लगाई हुई हैं और यहां पर चाय मिलती है।

ये एक शॉप है यहां पर बच्चों के खिलौने वगैरा मिलते हैं यहां पर कुछ घरेलू सामान भी मिलते --

ऑफिस के अंदर एक लैपटॉप पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है टेबल पर कुछ सामान रखे हुए हैं डिब्बे पे और यहां ऑफिस थोड़ी छोटी सी --

टेबले कुर्सी चेयर वगैरा लगी हुई है यहां पर दीवारों पर अलग अलग प्रकार के छोटी बड़ी तस्वीर लगी हुई है।

ये यहां पर लिखा हुआ हमें नहीं पता होता है मुस्लिम लोग पढ़ सकते हैं दरगाह अंदर एक आदमी जा रहा है।

गाड़ियां वगैरा खड़ी हुई है बाइक स्कूटी खड़ी हुई है पास मे एक पेड़ लगा हुआ है और पीछे हरा-भरा दिखाई दे रहा है लाइटें वगैरा दिखाई दे रही --

यह एक संसद भवन है ये बहोत बड़ा भवन है यहां पर ये अर्जुना मेवाल ने बनाया --

और इसके सीढ़ियों के ऊपर गमले लगे हुए हैं और हमले में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

और पार्क के अंदर लाइटें भी लगी हुई हैं इसमें बेंचेस भी लगी हुई है जिसे लोग यहां पर आके बैठते हैं।

यहां पर बहोत ही अच्छा अच्छा क्वालिटी के सामान मिलते है यहां पर लेडिस की ज्वेलरी वगैरा मिलते है इयररिंग्स वगैरा सभी कुछ प्रकार के मिलते है।

यहां पर एक ग्राउंड सा दिखाई दे रहा है सुनसान जगह है और यहां पर ये हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है।

सूखे गीले कपड़े अलग अलग रखती हैं के लिए और यहां पर कुछ लोग खड़े हैं यहां पर ऑटो वाला भी --

और कड़ाईया ले जा रहे है मसालों की भरके और मिक्सचर लगा हुआ है मिक्सचर मे से मसाला बनकर बाहर निकाला जा रहा है और मसाला लो --